ग्राउन्ड मे पानी भरा हुआ है और घ घास लगी हुई हैं और ये देखिये यहाँ बरसात टाइम का पानी क मौसम दिखा रहा है।

और ये देखिये सामने कुछ बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं जो कि काफी बड़े हु हैं।

आईपीएल चल रहा है ये देखिये जोरों का मैच चल रहा है जो है ट्वेंटी ट्वेंटी मैच ये जो ट्वेंटी ट्वेंटी मैच चल रहा है। ये देखो कुछ प्लेयर घूमते हुए नज़र आ रहे हैं और ये देखो ये जो पेड़ लगे हैं जो कि यहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ हैं और यहाँ पे गाय वगेरा चढ़ रही हैं इस ग्रा --